ये कौन सी जगह है पता नहीं मुझे क्या बना हुआ है इसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हूँ पेड तो लम्बे-लम्बे हैं एंड यस ये तो मुझे नजर आ रही है।